नीचे में बहुत बड़े - बड़े फोल्डर को दिए हुए है।

और उसके ऊपर में अजंता ड्यूटी लिखा हुआ है।

कुछ प्लास्टिक में बंधे हुए है गाजर --

यहाँ झरना है जो की चट्टान के बिचों बीच में बह रहै है।

बहुत तरह तरह की मिठाई को उसके बगल मे --